सिलेबस कवर करने के लिए पढ़ने के लिए आते हैं यहां पर पढ़ाई की जाती है यहां पर पंखे लगे हुए है देख सकते हैं दोस्तों आप।

हेलो दोस्तों आप देख सकते है हमारे सामने अलग अलग प्रकार की इस तस्वीर में सब्जी दिखाई दे रही है और --

अलग प्रकार के पौधे हैं छोटी सी पाइप पड़ी है और गुलाब के पौधे सभी प्रकार के दिखाई दे रही हैं।

हेलो दोस्तों आप कैसे हो आप देख सकते हैं इस तस्वीर के अंदर हरे भरे पौधे दिखाई दे रहे हैं जोकि यहां पर ये फौरा विधि के द्वारा पानी लेके आया जा रहा है इस विधि में --

इस फसल में ये आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत अच्छी फ़सल है ये देख सकते हमें--

हेलो गाइस आप कैसे हैं आप देख सकते हमारे सामने एक पौधा है औ पौधे में--

हेलो भाई साहब आप देख सकते हैं इस तस्वीर के अंदर कुछ सामान दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा सामान है यहां पर एक पिज्जा है।

बहोत अच्छा मौसम है दोस्तों यहां पर गार्डन के नाईट पे न नाइट के समय यहीं पर रेहना चाहिए रूम किराया लेना चाहिए।

आप दे सकते हैं दोस्तों यहां पर सभी प्रकार का शोरूम यहां डॉल भी लगाए गए हैं लगता है आज इस शोरूम का --

आदमी अपनी तसवीर खींचा रहा है इस तसवीर के पीछे एक बहुत विशाल मंदिर है बहुत पुराना मंदिर है दोस्तो आप देख सकते हैं।

हैलो दोस्तो आप देख सकते हैं हमारे सामने एक जे_सी_बी है जो एक खड्डा कर रही है और यहां पर थोड़ा --

कितना अच्छा माहौल है इस दुकान के अंदर देख सकते है दोस्तों बहोत अच्छी दुकान है ये आप देख सकते है दोस्तों इस से ज्यादा कही नहीं दिखाई दे रही है बहोत पीछे-पीछे का म् --

धंधा चल रहा है इनका मै तो ये कहना चाहूंगा ऐसे कपड़े बेचते रहे ऐसे ही धंधा करते रहे देश में प्रगति करे दोस्तों बहोत अच्छा --

हेलो दोस्तों आप कैसे हो आप देख सकते हैं यहां पर हर प्रकार के पौधे लगे हुए हैं अलग अलग क्वालिटी के पौधे हैं।

छोटे-छोटे है देख सकते है रेत का टीला भी है रेत की टीले के ऊपर एक पौधा विशिष्ट पौधा लगाया गया था।